ये एक हार की दुकान हे और यहाँ पे बहुत ताज़े फूलो के और बहोत अच्छे कलर के हार हैं एक बहुत मोटी-सी वरमाला जैसी यहाँ पे डली हुई है जो कि वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स की हे।

अ यहाँ पे एक ग्राउंड है और यहाँ पे काफी सारी बॉउंड्रीज़ बनी हुई हैं।